और उसके पास में एक चेयर रखी है जो नीले रंग की है जहाँ पर मीटर लगे हुए हैं जिसमें बत्तियां जल रही है जो लाल नीली और पीली है।

इसमें सफेद रंग से यूनिक्स लिखा हुआ है दीवारें नीली है।

जो लाल चेयर पर है जिसमें नीली जर्सी पहन रखी है उसके हाथ में एक पैड है जो भूरे रंग का है।

जिस पे सीढ़ी लगी हुई है और छत का रंग भी मटमेला है।

यहाँ मुझे एक ऑटो दिख रहा है जो नीले रंग का है जिसके आगे शीशा लगा हुआ है जिसपे एट्रो लिखा हुआ है।

जिसपे तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है।

एक आदमी है जो की मास्क लगाए हुए है जिसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ एक मैदान दिख रहा है जिसपे कुछ कालीन बिछी हुई है जो हरी और लाल रंग की है।